यहां पर बहोत खड़े हुए हैं यहां पर खाने के बहोत सारे--

मुझे यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है।

इस दुकान का नाम टाइटन है। यहां पर फास्ट्रेक और टाइटन की वॉच मिलती है।

यहां पर काउंटर में एक शॉपकीपर बैठा हुआ है।

मुझे यहां पर एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक टेबल दिखाई दे रही है जिस पर टेबल फैन रखा हुआ है।

आर_टी_ओ के बाहर ट्रक कार बस खड़ी हुई है।

मुझे एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे खेलते दिखाइ दे रहे है।

यहां पर मुझे दो झंडे दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे यहां पर पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक खिड़की दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर डेंटल क्लिनिक दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर दांतों का उपचार किए जाने वाली मशीन दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर एक इस्टेशन दिखाई दे रहा हैं जिसका नाम सिहोरा हैं।